घूमने के लिए पार्क है जिसमें लव्स टाइप का कुछ जो है ग्रीन कलर का बनाया हुआ डिज़ाइन है।

रेड कलर का पाइप जैसा शो कर रहा है पंखा नजर आ रहे है लाइट्स ऑन है व्हाइट कलर से पुता हुआ है।

इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर लिखा हुआ है गेट दिख रहा है हल्का सा कार शो कर रहा है वि.जी. लिखा हुआ है।

खाने का सामान रखा हुआ है जिनका सामान रखा हुआ है जो ब्लैक कलर के हैं।

ओन शो कर रहा है एंड खिड़की है।